उसके आगे कुछ काच लगे हुए है और एक गाड़ी है फोर व्हिल्लर ।

थ्री बीन्स लिखा हुआ है जो काल- सफ़ेद कलर मे लिखा हुआ है काला कलर मे कुछ बना हुआ है और सफ़ेद है और लाइट इसमे सफ़ेद जल रही है।

मेडिकल है की स्टोर है जहाँ पर मेडिकल की कुछ गोलिया रखी दवाईयां रखी हुई है।